यहाँ पे लोग अपने सामान को इकठ्ठा रखते हैं। उसके बाद ही किसी दूसरे जगह स्थान पर ले जाया जाता है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है।

जहाँ पर लोग अपने मन को शांत्र (शांत ) एकांतर और और प्रसन्नचित्त करने के लिए जाते हैं |

इस दिन राम जी अयोध्या वापिस आए थे। चौदह वन के वनवास के बाद।

एक ही अत्यधिक एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे लोग आ के अपने दिमाग में रखी हुई नए तकनिकी वि विचारों को प्रयोग करते हैं तथा नए-नए आविष्कार करते हैं।